का डोबड़ी से वेहिकल डोबड़ी है है तो जे जिनसारी है को कोन कोन से बची है।

ये एक थोड़ी से यहीकल बनाकर जाती हैं जाती तो नहीं है सुनाती हैं।

लोग अलग अलग से दिकाने के लिए लाल रंग से हरा बरा होती है।

अ नीला रंग हो है।

तीन सिलवरो से महिलाए से--

तीन दिन से एक शॉप सिल्वर शॉप दिखाने के लिए --

चोरी से मिलता है नहीं नल नल से--

यह चित्र के बारे में से--

अंदर बजाने के लिए सही देखता है लिए तीन व्यक्तियों से लकड़ी है।

यह चित्र के बारे मे से एक पेट्रोल ईंधन से नहीं सकता ये--

दिखाने के लिए इस लिए को दिखाने से मिलता है।

यह चित्र के बारे में से--

यह चित्र के बारे में से --

श्री शिर्डी साईं होने वाली--

टी_वी_एस जानते वाली है यह इंडियन बैंकों में से--

रंग रंग से लड़कियों में से कुर्सियों वाले से--

इंग्लिश मे लिखना के लिए--

मछली के दिखाने के लिए--

मणिक्षा है तू वृक्ष --

सभी से हरा भरा लोग दिखाने --

ये लड़कियों से महिलाओं से अंदर जान दे सकते है।

वालों में से विनता है सेसर की सगी हो रही है दिखाने के लिए --

एक से चक्र में दिखाने के लिए इंधन को मिलता है।